ये कर्नाटका तेलंगाना कही का भी सकता है ।

मिरर सेल्फी ले रहा हैं।

इ बोहत ही सुंदर ठंग से इसको सजाया गया है।

ये स्कूल प्लस हॉस्टल लग रहा है और ये सामने ग्राउंड है ।